यह दिखाई दे रहा है पेड़ का कलर काला और हरा दिखाई दे रहा है | पत्ते गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और हरे- हरेछोटे-छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं | ज़मीन दिखाई दे रही है जिसमे --